हलके के नीले रंग है। ये बच्चे नहीं एवं बच्चे बहोत कम बच्चे बहुत ज़्यादा दिखाए दे रहे हैं।

रोड की है जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है तथा कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन दुकाने व घर भी दिखाई दे रहे हैं। एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है तथा ये रोड बोहोत सुनसान मालूम पड़ रहा है।

यह तस्वीर किसी मॉडल अथवा किसी नक़्शे की है | यह तस्वीर किसी म्युजियम मे खिंची गई हो सकती है | इस तस्वीर मे छोटे छोटे बहोत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं | यह तस्वीर बहोत ही सुंदर मालूम पढ़ रही है।

ये पत्थर है सब में देखे जा सकते हैं। कुछ वर्कर इधर-उधर टहलते हुऐ देखे जा सकते हैं। एक लोरी बीच में खड़ी हुई देखी जा सकती है। वर्कर ने अपने सर पर कुछ पहना हुआ है।

यह तस्वीर छठ के दिन की हो सकती है। ये किसी बिहार के किसी क्षेत्र की तस्वीर हो सकती है। यहाँ पर पानी में उतरकर बहुत सारे लोग सुबह का अर्घ्य देने का कार्य करते हुए देख --